सफाई चल रही है उनकी ये देखो सफाई कर रहे हैं ये दोनों लोग।

ये कहाँ की उत्तरकाशी की लाइब्रेरी है यह देखो लाइब्रेरी में लाइब लाइब्रेरी में ये देखो बुक वगैरा रखना काफी लोग यह लाइब्रेरी मैं बुक पढ़ने के लिए आते हैं।

ये देखो जो हमको दिख रहा है ये है यहाँ का जो हाउस है उन् यहाँ का होम हाउस है जहां पे ये देखो बहोत सारे फैंस हैं रखे हुए हैं जो कि--

ये देखिए जो हमको नजारा दिख रहा है जो कि ये होटल का है काफी अच्छा होटल है और ये देखिए आप देख सकते हैं जो कि ये उत्तरकाशी में है इस --